बेंच के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

और सामने एक गेट हैं और यहां पर--

आस पास कुछ पेड़ लगे हुए हैं और सामने कुछ ईंटें रखी हुई है।

यहां पर कुछ सामान रखा हुआ है और सामने एक अलमारी है।

और यहां कुछ खम्भे लगे हुए है।